चित्र में एक मंदिर दिख रहा है जहाँ पर लोग पूजे कर रहे हैं। एक बोहोत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो प्रसाद चढ़ा रही हैं लड़कियाँ खड़ी हैं दूर आदमी खड़े हुए हैं।

जो पूजा कर रहे है बच्चे बूढ़े आदमी सभी लोग पूजा कर रहे हैं ये तालाब में खड़े होकर पूजा हो रही है एक कस्ती दिख रही है जिसमें झंडे लगे हुए हैं।

लोग दिख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं खाने का समान लगा है बच्चो के झूले लगे हैं पेड़ दिख रहा है।